कलर के घर बने हुए हैं और यहां लोहे की जाली रखी हुई है।

चारों ओर बहोत बड़ी-बड़ी दुकाने है दुकानों के बगल पे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहां पर एक कार्यालय बना हुआ है साथ में यहां लोग खड़े हैं।

यहां पर बहोत सारे लोहे के पाइप और लोहे के हैंगर लगाए गए हैं साथ में यहां पर--

मैट लगाए है और यहां पास बहोत सारे कूलर और ए_सी लगाए गए है।

यहां बस कुछ लोग बैठे हुए हैं जहां बस बहोत बड़े बड़े--

इस फोटो में मुझे गरमा गरम पराठा दिखाई दे रहा है जो तरपे में रखा हुआ है साथ में इसमें--

घर बने हुए है और यहां पर बहोत सारे बड़े बड़ी पेड़ लगे हुए है।

मॉल के तरफ में बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं और कुछ लोग--

यहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं ये सामने की तरफ में ग्राउंड बनाया गया है।

यहां बस एक घर बना है जहां पास लोहे की जाली लगाई गई है साथ में यहां पर बहुत से लोग खड़े हुए हैं।

इस फोटो पे मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जहां पास बहोत सारे लोग--

साथ में यहां बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं पेड़ के ऊपर झालर लगाई गई हैं यहां बस एक घर है घर के बाहर एक बड़ा सा कांच का गिलास लगाया गया है।

साथ में ये घास खा रहा है चारों ओर फल डले हुए हैं।

साथ में यहां पर बहोत सारे बल्ब लगाए गए हैं कुछ कैमरे लगाए गए हैं यहां बस एक फूलों का माला टंगाया गया है।